एक व्यक्ति गुफा के प्रवेश द्वार के सामने खड़ा हुआ नजर आ रहा है।

गुफा के आस पास की चट्टानें भूरी और काले रंग की दिखाई दे रही हैं।

जमीन पर मिट्टी और पत्थर फैले हुए दिखाई दे रहे हैं।

मशीन पर रीसाइकल का स्टीकर चिपका हुआ दिख रहा है।

सफेद खंभों से बनी एक इमारत नजर आ रही है।

अंदर कुछ कुर्सियां और एक नीला टेबल रखा हुआ दिखाई दे रहा है।

बीच मे नीले रंग की रेलिंग के साथ एक संरचना दिखाई दे रही है।

हरे भरे पेड़ और पौधे और घास का मैदान नजर आ रहा है।

अने पेड़ और हरियाली का दृश्य दिखाई दे रहा है।

सामने की ओर एक की संरचना बनी हुई भी नजर आ रही है।

पर चाऊमीन और मोमोज जैसे फास्ट फूड बेचने की जानकारी दी गई नजर आ रही है।

दाएं ओर कुछ हरे भरे पेड़ और झाड़ियां नजर आ रही है।

यह एक मूर्ति नजर आ रही है मूर्ति के चारों ओर फूलों की माला चढ़ाई गई दिख रही है।

मूर्ति के पास सजावट के लिए फूलों के गुलदस्ते और पीतल के गमले रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक छोटा सा जलाशय भी नजर आ रहा है।

कई लोग खासतौर पर बच्चे और झूले पर बैठकर आनंद लेते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एक स्टूडियो नजर आ रहा है जहां फैशन से जुड़े तस्वीर लगी हुई है।

जिनके पीछे मालगाड़ी के डब्बे जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं।

रेलवे ट्रैक के ऊपर एक फूट ओवर ब्रिज बना हुआ दिख रहा है।

पानी एक नियंत्रित संरचना से होकर बहता नजर आ रहा है।

गेट के दोनों ओर सफेद रंग के पिलर बने हुए दिख रहे हैं।

मंदिर के सामने एक खुला बरांडा है जिसमें लाल रंग के लोहे के खंभे लगे हुए दिखाई दे रहे हैं।

छत पर कई लाइट्स और पंखे लगे हुए नजर आ रहे हैं।

इसमें ऊपर के हिस्से में खिड़कियां और बंद शटर दिखाई दे रहे हैं।

सामने की मेज पर स्टील के गिलास और पानी की बोतले रखी हुई दिखाई दे रही है।

और बगल में बीमा सलाहकार का बोर्ड भी नजर आ रहा है।

एक गोदाम नजर आ रहा है दीवार के किनारे बहुत सारे डब्बे करीने से रखे हुए दिखाई दे रहे हैं।

कुछ पेड़ों की टहनियां बरामदे की ओर फैली हुई दि-दिखाई दे रही हैं।

भाई और एक पोस्टर पर कृष्णा इंडस्ट्रीज का उल्लेख किया गया दिखाई दे रहा है।

दाएं और एक अन्य पोस्ट पर ताज फ्रेंड के बारे में जानकारी दी गई नजर आ रही है।

बच्चा दाई और दीवार पड़कर खड़ा हुआ दिख रहा है।

पीछे एक ऊंची इमारत है जिसमें कुछ खिड़कियां रोशनी से जगमगा रही हैं।

बाई ओर एक पुरानी इमारत जिसकी दीवार और छत साधारण निर्माण शैली की प्रतीत होती दिखाई दे रही है।